एक व्यक्ति बैठा हुआ है सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बैंचों में विभिन्न रंग का कलर किया गया है।

आसपास आग लगने वाला अग्निशामक यंत्र भी रखा हुआ है।

ढाबे के ऊपर एक बैनर लगा है जिसके ऊपर होटल मसौरा बैरियल लिखा हुआ है।

दुकानों के बाहर फूलों की बनी मालाएं लटकी हुई हैं।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

एक बड़ी अलमारी के पास एक सोफा सेट रखा हुआ है।

सामने रोड जा रही है रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

साइड से एक परदा जिसके ऊपर सफेद कलर की पट्टी लगी हुई है।

पास में दो तीन कुर्सियां और सामने स्लैब बना हुआ है।

सामने लकड़ियो का अन्य सामान रखा हुआ है पीछे एक लकड़ी का द्वारा बना हुआ है।

मिट्टी की सड़क के ऊपर छोटी छोटी उभरी चट्टानें दिखाई दे रही हैं।

पास में लकड़ी के दो दरवाजे भी लगे हुए हैं।

एन लाइट आदि अन्य सामान दुकान के किनारे टंगा हुआ है।

एक कांच का शोकेस बना हुआ है।

एक सड़क जा रही है सड़क के पास वाहन खड़े हुए हैं।

एक प्लेटफार्म पर नीले कलर की टीन की सेट पड़ी है जिसके ऊपर ललितपुर लिखा हुआ है।

तालाब के आसपास कई सारे बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने लगी हुई है।

पास में दीवार पर कांटेक्ट नंबर मार्बल्स टाइल्स ग्रेनाइट आदि लिखा हुआ है।

ढाबों के आस पास तखत मेज कुर्सियां इत्यादि पड़ी हुई है।

दीवार के आस पास कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक प्रोग्राम चल रहा है प्रोग्राम के अंदर कई सारी महिलाएं व स्टेज पर आदमी खड़े हुए हैं।

एक व्यक्ति नीली शर्ट और पैंट में खड़ा है उसके पास एक मशीन रखी हुई है।

शीशे के केस के पीछे एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

सामने कुछ मुर्गे हैं मुर्गे एक कमरे में बंद हैं।

मुर्गो के पीछे मिट्टी के कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं।

मेज के ऊपर लाल कलर का कपड़ा और कपड़े के ऊपर गिलास चम्मच प्लेट इत्यादि समान रखा हुआ है।